यहां पे एस कलर में कार दिख रहा हैऔर वो कार का सामने वाला हिस्सा खुला हुआ है और टायर भी इसका खुला हुआ है।

और इधर कार मोटरसाइकिल बाइक डिफरेंट कलर में शो हो रहा है और इधर और लेफ्ट साइड में पर भी है और इधर सामने एक चेयर रखा हुआ है।

और सामने एक घर है वाइट कलर में और पेड़ भी है बहुत सारे एक कोकोनट ट्री भी मुझे दिख रहा है और यहां पर एक लाइक पोस्ट भी है दूर में।

एक बहुत सुन्दर ब्रेक का स्ट्रक्चर में मिला है जो ऑरेंज कलर का है और ऊपर छत भी दिख रहा है और बालकनी भी दिख रहा है जो बहुत सुन्दर हैं।

सामने भी रेलिंग दिख रहा है और यह बालकनी का रेलिंग है।

जैसे की लास्ट वाला जो बच्चा है उसका मटका करें ऑरेंज बीच वाला जो बच्चा उसका मेट का कलर है पिंक और सामने वाला जो औरत है उसकी मेट का कलर है वायलेट ।

यहां पे तीन ऊठ कलर का उड़न का सोफा दिख रहा है और दूर में स्ट्रक्चर भी नजर में आ रहा है और वहां पे शेड भी लगा है बहुत दूर में।

यहाँ पे ये डांस का क्लास हो रहा है। कई बच्चे डांस प्रेक्टिस कर रहे हैं औरअ डांस का टीचर जो है उसको ट्रेन कर रहे हैं।